यहाँ किसी जगह का घंटाघर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं और पानी को देखते हुए नजर आ रहे हैं पुल के ऊपर कुछ आदमी चल रहे हैं।

और यहाँ जिम हॉल मे कुछ लोड फोटो खिचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिम जिम मे लोग एक्सर्साइज़ करने जाते हैं एक्सर्साइज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिससे बॉडी फिटनेस रहती है|

यह क्रिश्चन का संबल है।

और कुछ लोग बोटिंग कर रहें हैं बोट पर कुछ लोग सवार हैं।

यहाँ कोई कॉफी शॉप है यहाँ पर कॉफी की मशीन लाइफ़बॉय का हैन्डवाश और --

जिम मे दो लड़के सेल्फ़ी लेते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग इक्साइज़ कर रहे हैं।

और पैसे निकालकर बाहर आ कर दूसरा व्यक्ति तब जा सकता है |

जहां बुक पेन पेंसिल किताबें बुक मिलती है।

ऑइल के गोडाउन में सेल्फ़ी खिचता हुआ एक वॉरकर --

यहाँ से व-अ-इ-गोडाउन से ऑइल ए-एजेंसीयों मे जाता है।

एजेंसियों से दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करतें हैं।

अपना खाने का इंतजार कर रहे हैं|

यह एक लाइब्रेरी के रूम की एक फोटो हैं।

जिम में एक्सरसाइज करता हुआ आदमी --

जिम जाना इंसान के लिया बहोत जरूरी होता है|

सैलून के अंदर बैठे हुए कुछ लोग बाल कटवा रहें हैं।